इस पिक्चर में बड़ी-बड़ी चट्टानें दिखाई दे रहीं हैं। चट्टानों में से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर चट्टानों के ऊपर कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए नजर आ रहे है।

इस पिक्चर में एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है जहां पर छोटी-छोटी हरी-हरी घास दिखाई दे रही है।

जिसमे अलग-अलग कलर के फ्लावर्स लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

ये पिक्चर एक कैफ़े की है जहाँ पर बहुत सारी चेयर और टेबल दिखाई दे रही है।

बाउल में आइसक्रीम रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ स्पून भी रखे हुए नजर आ रहें हैं।

यहाँ पर तालाब के किनारे पर दो लैडी जाती हुई नजर आ रही है जो की सर पर डलिया रखे हुए है।